यहाँ होटल लागे एहा पर एक ठन एक दु ठन कुर्सी दिखाईत हवै--

इम्हा सफेद कलर के इक ठे गाडी खड़ा दिखाई देत हवै और एक ठन करिया कलर के और एक ठन ट्रैक्टर खड़ा दिखाई देत हवै जेहा लाल कलर के दिखाई देयत हवै।